का अनुसार यख मा जी जु छा हमते एक बड़ू भारी कू कमरा दिखेणु।

का अनुसार यख मा जी जु छ हम तें एक जिम छ दिखेण लग्युं यख मा जी जु छ एक लड़का छ दिखेण लग्युं।

चित्र का अनुसार यखमा जी जो छा हमते कई सारी नोनी छन दिखेंण लगीं।